ये तस्वीर में एक युवक दिखाई पड़ रहा है जो कार के अंदर बैठा है तथा और बहुत सारी गाड़ियां भी नजर आ रही है यह किसी जो हाथ में झूला लेकर कहीं जा रही है।

इस तस्वीर मैं आप एक बिल्डिंग के अंदर --

इस तस्वीर में आप हाथी और गणेश जी और हनुमान जी को देख सकते हैं उनकी बहुत प्यारी सी प्रतिमा बनी हुई नजर आ रही है।

इस तस्वीर में आप एक दुकान को देख सकते हैं जहाँ बहुत सारी ब्रेड और प्लेट्स रखी हुई है और इस पर बहुत सारी फोटो भी चिपकी हुई है।

ईस तस्वीर में आप बहुत सारी कार को देख सकते है साथ में ऑटो लगी हुई है और कारों का रंग अलग-अलग है।